सामने डस्ट्बिन एवम हेलमेट रखा हुआ दिक्छित आहे सामने टेबल पे बहुत सा समान रखा हुआ दिक्छित आहे.

माला इस फोटो मे साड़ी की दुकान दीक्षिता आहे सामने दो आंटीया साड़ी देखती हुई दीक्षिता आहे.

मंदिर के बाहर लोग बैठे हुए दिक्षित आहे.

माला इस फोटो मे टेबल कुर्ची दिक्चित आहे यहाँ पे लोग अपने लैपटाप एवं मोबाइल मे कार करते हुए दिक्चित आहे यहाँ पे एक बोर्ड है चार्ज का जहा पे दो चार्जर लगी हुई दिक्चित आहे.

टेबल पे पानी की बॉटल कॉपी किताब बॅग आदि सामान रखा हुआ दिक्चित आहे.

माला यह फोटो में एक दुकान दिखशिता है यहा पे किताबे एवम बड़े-बड़े डिब्बे रखे हुए दिखशिता है सारे किताबे व्यवस्तित जमे हुए-- --

माला इस फोटो मे घर की किचन की समान की छीजे एवम झूमर कॅनडल लाइट एवम बहुत सी चीजें राखी हुई दिखशिता है।

माला इस फोटो मे बहुत सी बदके दीक्षित आहे बदक के सामने पानी एवम् एक बोट दीक्षित आहे यहा पर साइड मे बहुत से हरे-भरे पैड-पौधे दीक्षित आहे.

दिक्चित आहे. पाणी के बाहर निकलने के लिए एक रॉड लगी हुई दिक्चित आहे. पानी मे एक आदमी भी दिक्चित आहे.

यह बहुत ही पुराना एवंम शोपीस दिखचित आहे. यह फोटो एक बहुत ही खूबसूरत फोटो दिचित दिखचीत आहे.